ये हाल है एक बड़ा सा जहाँ पे हम आ प्रोफेशनल मीटिंग भी कर सकते है और --

दुकान है। यहा पे डीएवी नवोदय केन्द्रीय विद्यालय है।

और वो उनके विचार अगर हम फॉलो करें असली जी --

और एक बाइक लगी हुई है और रोड के बगीचे के साथ-साथ बगीचे तो हैं ही बीच-बीच में घर भी बना हुआ है।

ये कोई नदी है यहाँ नदी के साइड में एक पहाड़ है और नदी मे बहुत बड़े-बड़े पत्थर है।

लत्ती जो है नीचे की तरफ गिरी हुई है उसमे पत्ता नहीं है आस-पास भी पेड़ --

किसी सिख ईसाई वालों का कोई फंक्शन चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहें हैं जो बोल रहें हैं वो बहुत टीचर टाइप हैं।

जो के किसी जेल में बंद है कैद में है और यहाँ पे उसका बेड मलतब कुछ लकड़ी का है जिसपे वो अपना हाथ रखे हुए हैं और ये जेल में बंद है।

और इस सुधा में बहोत सारी चीज़े मिलती हैं जैसे आइसक्रीम हुआ सुधा का मधु हुआ आ पेड़ा हुआ और उम --